छत पे खड़े हुए हैं कुछ मजदूर काम कर रहे हैं आसमान दिख रहा है आस पास बिल्डिंगे दिख रही हैं पेड़ दिख रहे हैं।